ऊपर में आसमान और बादल भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा टैरेस दिखाई दे रहा है।

ऊपर मे आसमान भी दिखाई दे रहा है चारों तरफ बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक फूल का दुकान दिखाई दे रहा है।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

टेबल भी दिखाई दे रहा है और लाल कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहुत सारी रंग बिरंगी साड़ी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ी सी सड़क दिखाई दे रहा है।

कोना में एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

तोफा एन कुसन भी दिखाई दे रहा है एक टी_वी भी दिखाई दे रहा है दीवार में स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहुत सारे कुकीज के डिब्बे भी दिखाई दे रहा है।